यहाँ पे पढ़ने की हर चीज भी मिलती है ।

कि इस चित्र मे दिखाई दे रहा है और ये पावर हाउस पावर है।

एकी इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक घर का चित्र है।

दाढ़ी भी बनती है और फेसिअर भी होता है और यहाँ पे कांच सीसा भी लगा हुआ है यहाँ पर।